इस तस्वीर में हमएक एक्सरसाइज करता हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा हैं जो साथ ही साथ में फ़ोन पे बात कर रहा हैं।

जिसके बगल से दो व्यक्ति निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बा बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी--

जिसमें हम दो व्यक्तियों को काम करता हुआ देख सकते हैं इस मशीन में धागा बनाया जाता है।